यह फैक्टरी बहोत बड़ा है। यहाँ पे बहोत सारे वर्कर काम करते हैं। यहाँ पे बहोत ही अच्छी तरह से काम किया जाता है। यहाँ पे सभी लोग अच्छे टाइम पे आके अपने काम --

आप यहाँ पे एक बहोत बड़ा मॉल देख सकते हैं। वो बहोत सारे प्रकार के समान रखे गए हैं। यहाँ पे बहोत सारे खाने पीने अन्य प्रकार के सामान भी रखे गए हैं।

इसमें बोहुत लगाए गए है।

आप यहाँ पे एक बहोत बड़ा और हाय-फाय एक सलून देख सकते हैं। यहाँ सलून बहोत ही काफी --

यहाँ पे जितने भी छात्र छात्रा हैंसभी एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने क लिए आये हैं। यहाँ पे काफी ही अच्छी तरह से प्रबंध किया गया है। यहाँ पे काफी अच्छी तहर से एग्जाम लिया जाता है। यहाँ पे --

आप यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे दो लोग उसे पकड़े गये हैं। यह मूर्तियाँ काफी अच्छी तरीका से बनाया गया है।